भगवान का मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में बड़ा सा का घर दिखाई दे रहा है।

खिड़की का सामने पर्दा भी लटका के है।

पेड़ भी लगा के है ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

मुझे यह पिक्चर में पार्क दिखाई दे रहा है बहुत सारा इंसान भी है एक दो तीन इंसान खड़ा हो के भी है और एक दो तीन बैठ के भी है।

ये पिक्चर में हरा रंग का पत्ता भी है।

मुझे ये पिक्चर में बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का चेयर भी है उसमें बैठ रहा है बहुत सारा आदमी।

मुझे यह पिक्चर में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

ग्रास भी है येलो येलो में और ग्रीन ग्रीन में।

मुझे ये पिक्चर में दो गाड़ी दिखाई दे रहा है बाइक भी दिख रहा है।

मुझे ये पिक्चर में बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है बहुत सारा सामान भी है।

मुझे ये पिक्चर में बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

ऊपर में इंग्लिश से कुछ लिख के रखा हुआ है।

मुझे ये पिक्चर ने बड़ा सा दिपो पंप दिखाई दे रहा है।